प्रणाम कर रहा है फूलो की मालाए दिख रही है पत्तिया लगी हुई है टेंट लगा हुआ है।

यहा पर दुकान दुकान दिखाई दे रही है ग्राहक लोक सेवा केंद्र और यहा पे महिलाए खड़ी हुई है और मुझे कुछ ईटों ईठ दिखाई रही है पत्थर दिखाई दे रहे है।

छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे है हात ऊपर करके खड़े हुए है। लाइट्स लगी हुई है। बाहर मुझे विंडो दिखाई दे रही है।

यहा पर एक छोटा बच्चा है कुछ महिलाए है एक आदमी है यहा पर बाहर कुछ खाने पीने की चीजे लगी हुई है एक सीढ़ी लगी हुई है लोहे की और इसका बोर्ड लगा हुआ है बाहर --

ये है सलोन है सलोन के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है।

लाइट लगी हुई है। खिड्किया है और सफ़ेद कलर की पोथायी हो रही है। खिड्कियों पर परदे लगे हुए है।